और इस दुकान में फर्स दिख रहा है और लाइट्स दिख रहा है।

बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैंऊपर छोटे-छोटे सीसीटीवी कैमरे और कुर्सी रखा हुआ है टेबल भी रखा हुआ है।

चेयर्स भी सफेद रंग का ही है और किनारे किनारे--

बहुत बड़ी बस दिख रही हैऔर कच्ची सड़क दिख रही है।

और बस के सामने एक आदमी खड़ा है।

जो कि लग रहा है कि बस ड्राइवर हैऔर किनारे किनारे छोटे-छोटे--

और घाट के ऊपर चढ़ाया गया फल दिख रहा है।

और एक दुकान है जिसमें बहुत सारे सामान रखे हुए हैं बहुत कपड़े रखे हुए हैं।

सोफे बहुत सारे रखे गए हैं जो की सोफा का कलर है येलो और।

और टेंट के अंदर ग्रीन कलर का कारपेट बिछाया गया है।

अंदर बहुत भीड़ लगी है फूलों से सजाया गया हैऔर लाइट्स लगी हुई है रात का समय--

फर्स दिख रही है जिसके ऊपर कागजों से बनाया हुआ चित्र रखा हुआ है और--

बहुत बड़ी फैक्ट्री हैजो कि कच्ची सड़क दिख रही है।

और फिर बादल दिख रही हैं सफेद सफेद पहाड़ दिख रहे हैं।

सामने भी एक बहुत बड़ा पेड़ है मंदिर दिख रही है मुझे और बहुत सारा घर दिख रहा है छोटा छोटा और पेड़ पौधे तो बहुत जंगल भी दिख रहा है।

और अ ओ ऊपर लाइट्स भी लगे हुए है बोर्ड भी लगे हुए है।

और खिड़कियाँ हैं दरवाजे हैंऔर कलर किया गया है घर को--

और बाहर एक मोर खड़ा और गेट पे भी फूलों से सजाया गया है और किनारे किनारे पेड़ पौधे हैं आसमान दिख रहा है और रास्ते में--

लाइट्स लगे और ब्लैक कलर की खिड़की है बहुत बड़ी ।

एक बहुत बड़ा कमरा है जिसमें दो बहुत बड़े-बड़े खिड़कियाँ हैं।

बहुत बड़ा रोड दिख रहा है बहुत बड़े-बड़े बिल्डिंग दिख रहे हैं अगल-बगल में रोड के बहुत सारे पेड़-पौधे हैं।